गेट टाइप का बना हुआ है बाकि गेट नहीं लगा हुआ है।

ब्रिज बना हुआ है और उसके पीछे पेड़ भी दिख रहे है ग्रीन ग्रीन कलर के बड़े-बड़े है।

और काफी मतलब पार्क टाइप का है और खेती है उस साइड --

पोस्ट ऑफिस हल्दी हिंदी में भी लिखा है हिंदी में लिखा है डाक घर --

निचे टाइल्स लगी हुई है।

और बीच में कुछ बना हुआ है जिसपे लाइट फोकस जा रहा है पानी आ रहा है शायद इसके ऊपर से--

ऑटो दिख रहा है इंसान है ल अ अंटिया है लड़की है लड़के है।

और इधर काफी बड़ा ग्राउंड है जो की शायद कॉलेज या स्कूल है क्योकि काफी पब्लिक भी दिख रही है कोई स्कूटी से जा रहा है कोई आ रहा है।

तिलक लगाया है ईयरफ़ोन लगा के बैठा हुआ है।

और इ निचे ग्राउंड पार्क टाइप का है निचे धुआँ-धुआँ लगी ऊपर आसमान दिख रहा है।

आज से मैठ किया गया है कोई बैठे है कोई खड़े है कोई बात कर रहे है।

पेड़ भी दिख रहा है छोटे बड़े पेड़ भी है यहाँ पे --